हमे यहाँ कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

और मै यहाँ बाहर की तरफ कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और हमें एक जेंस दिखाई दे रहै है बाइक के यहाँ बैठे हुए कुछ करते हुए --

गुफा की तरह कुछ दिखाई दे रहा है।

मंदिर की तरह कुछ दिखाई दे रहा है।

साइड मे से भी हमें एक बाइक आती हुई दिखाई दे रही है।

हमे यहाँ कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

और हमें यहाँ खिड़किया दिखाई दे रही है वहाँं से हमे उजाला आता दिखाई दे रहा है।

उसपे हमे कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।